ये एक रेस्टोरेंट है और यहां पे गोल वाली मेज रखी हुई है।

और उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

और उसके बराबर में एक बोर्ड भी लग रहा है।

और ऊपर एक एल_सी_डी लगी हुई हैं।

और उसके पास में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इसके गेट पे शीशे लगे हुए हैं।

कुछ पेड भी लग रहे है।

नीचे कुछ पीले कलर की मैट बिछी है।